आसपास में काफी बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहें हैं।

यह दुकान काफी साफ-सुथरी व् रोशनीदार लग रही है।

वहां कुछ बच्चे खड़े होकर बातें भी कर रहें हैं।

और अपना अभ्यास करते हुए नजर आ रहें हैं।

इस चित्र में एक बहोत ही सुंन्दर और बड़ा घर नजर आ रहा है।

वहां आसपास में काफी हरियाली है।